और यहाँ का झाड़ी उढ़ी जो है बहोत अच्छा लुक है।

और यहाँ के नजारा भी बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है।